यहाँ पे लाइट के खंबे दिख रहे हैं बड़े-बड़े फोकसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं।

ये एक बड़ी सी कंपनी और यहाँ पे एक ऑफिस की तरह यहाँ पे टेबल डाला हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे छोटे बड़े खतरे पड़े हुए हैं यहाँ पे बाजू बहोत बड़े बड़े यहाँ पे--

बहोत सारे काम करने वाले हैं बाहर यहाँ पे गाड़ियां दिख रहे--